वहां में अलग अलग भुजिया रखा हुआ है।

धान के बीचों बीच गंजी भी देखने को मिला है।

पीछे में इंसान भी नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में मुझे पानी दिखाई दे रहा है।

नदी के किनार में कचरा भी निकला हुआ है।

इस पिक्चर मे मुझे साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे लंबा सा घर दिखाई दे रहा है।

वहां में बहुत ज्यादा लोग भी आया हुआ नजर आ रहा है।

दरवाजा में फूल भी टंगाया देखने को मिला है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग भी बैठा हुआ है।

घर के पीछे में तामूर का घास दिख रहा है।

बाइक में आदमी जाते हुए नजर आ रहा है।

बंक के अंदर पेड़ लोग भी दिख रहा है।

इस पिक्चर में मुझे घर दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग में छोटा छोटा खिड़की भी बनाया हुआ है।

पेन भी देखने को मिल रहा है।